अ ओ रनक छेत्र में तलवार से संग्राम कर रहा है स्टेचू रास्ता का शोभा बढ़ा देता है।

इस वर्कर लोगो का सैलरी दस हजार रुपया पर मंथ से स्टार्टिंग होता है।

ये हमारे इलाका का एक छोटा-सा पौंड है।

ये हमारे इलाका का एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है।

ए एक जेंट्स पार्लर है।

इस ऑफिस एरिया को प्लानिंग करके बनाया गया है।

ये पार्लर एयर कंडीशनर है।

यहाँ पर दुपूर से खाना पकाया जाता है